आसमान दिख रहा है एक बैनर दिख रहा है।

और एक वृक्ष है। पेड़ पौधे भी हैं।

और मिर्ची और भिंडी है प्याज है।

बिल्डिंग है बिल्डिंग बना रहे हैं दो व्यक्ति हैं।

एक व्यक्ति के हा हाथ में कागज छे--

और बहोत बड़े बड़े पत्थर भी है।